यहाँ बहुत ही सुन्दर एस_बी_आइ ए_टी_एम है छोटा --

यहाँ बहुत ही सुन्दर पेड़ दिखाई दे रहा है बहुत ही सुन्दर।

हेयर सैलून की दो अंकल बनवा रहे हैं।